ये एक मेडिकल कंपलेक्स है और इसमें तीन गाड़ियां हैं दो वाइट कलर की है और साइड में दो तीन पेड़ भी है।

ये क्लासरूम है जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं।

एक मिट्टी का रास्ता भी है और ईंटे हैं वहां पे।

अ स्कूल है जहां पे इनको आर्ट सिखाया जा रहा है।

एक कुर्सी साइड में है गमला है वहां पे--

और यहां से गेट है दो तीन बाइक्स हैं।

और दूसरी साइड में भी बाइक्स है ऑटो हैं।

यहां स वहां से हरियाली है एक साइड में छोटे छोटे गमले हैं।

ये जूस की दुकान है वहां पे मिठाई भी है जूस भी है।

दूसरी जगह पिलर्स है लगाए हुए हैं।

और एक साइड से एक कमरा हैं।

और बहोत सारे पेड़ भी हैं वहां पे और दूर से भी एक दीवार जैसी दिख रही है।

और साइड में हुक्के भी हैं लगा के--

ये एक ऑफिस जैसा है जहां पर कंप्यूटर है दो कुर्सियां हैं टेबल है और एक सिस्टम है।

अह सारे बीच बीच में बहुत सारे पत्थर हैं बनाते हैं डेकोरेशन --

एक दो लेडिस भी है रेड़े पे हैं ये एक आदमी उसको फोटो भी खींच रहा है।

जिसमें साइड मैं एक बाइक हैं और एक गाड़ी हैं।

गेट के साइड में एक का गेट बंद है और दूसरे का गेट खुला है।

पांच लो आदमी है ये दो आदमियों के पीछे--

एक औरत भी खड़ी है ठेले में है बहोत सारा सामान--

दो दीवार पे एक ऐसी लगा के हैं साइड में लगेजेस हैं।

इसमें बहोत सारे सारे टाइल्स हैं।

और नीचे जो है नीचे फ्लोर में भी टाइल्स लगा के हैं।

इसका कलर की टी शर्ट --

ये एक घर है बहोत बड़ा हवेली जैसी --

सोफे हैं कुर्सियां हैं टेबल हैं।

और बहोत्स तीन चार अ लेडीज है यहा पे--

सफेद कलर का बोर्ड है सफेद कलर का--

जो रे ये रेत लेके--

बंदोबस्त है वहां पे भी तीन लोग बैठे हुए हैं और लाइट भी ऑन है।

एक अ मेडिकल की दुकान जैसी कमरा लग रहा है जिसमें एक दो तीन चार पांच छह शेल्फे हैं छह सात शल्फे हैं इसमें दवाई है।

साइड में दूसरी अलमारी लगा के है और--

ये एक सामान क्या शल्फ लग रहे हैं जिसमें--

कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मगर कुछ सामान है इसमें--

ये एक डेकोरेशन करके हैं किसी जगह पे--

कुछ दुकानें खुली भी हैं और बहोत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं बहोत सारे लोग चल रहे हैं कुछ गाड़ियां भी चल रही हैं कुछ साइकिल भी चल रहे हैं।

एक आदमी है सामने उसको गागल लगाके है।

ये पांच छह आदमी हैं दिखाई दे रहे हैं।

अं और कुछ पटरी जैसी हैं साइकल के पीछे--

और साइड में चलने का रास्ता है यहां से कुछ पेड़ हैं।

कुछ लड़की कुछ औरतें नीचे बैठ के--

ये एक जगह है जहां पे बाहर--

ये एक मिक्सर है जिसमें बाजरी डाल के सीमट डाल के--

और एक डाल के इस पे काम किया जाता है इसमें वो तैयार करते हैं वहां पे नलका है।